इस तस्वीर में हमें कैफे रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में हमें एक गार्डन दिखाई दे रहा है।